जो देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है इसे बहुत मेहनत से बनाया हूँ --

इस तालाब की पानी बहुत ज्यादा सफा है और इस तलाब में बहुत प्रकार के कमल फूल भी खिलते --